फोटो भी अच्छा नहीं आएगा। पीछे बिल्डिंग लगा हुआ है । जिसमें एक बड़ा-सा टंगनी लगा है और उसमें कपड़ा लगा हुआ है। पूरा अच्छा से --